इसमें पत्ता काला काला दिख रहा है बड़ा बड़ा सा पत्थर लगा हुआ है पत्थर काला काला दिख रहा है कुछ भूरा भूरा भी दिखाई दे रहा है।

सामने बहुत ही बड़ासा मूर्ति बना है और वहा पर कुछ लोग भी दिख रहे है।

यहाँ पर बहुत बड़ा सा घर बनते दिख रहा है और सामने मे एक आदमी दरवाजा लगाता दिख रहा है।

यहा पर कार पार्किंग का बना हुआ है बड़ा सा मैदान जैसा है यहा--

और नीचे मे बाटा लिखा हुआ है और कुछ लोग आते जाते दिखाई दे रहे है।